सामने एक श्री रतन सारी शोरूम है जो चा तीन से चार फ्लोर का है जिसके पास एक पेड़ लगाहुआ है और ट्रान्समेशन लाइन गई हुई हैं।

सामने एक गार्डन है जहां पर छोटे छोटे पेड़ पौधे शोपीस के लिए लगाए गए हैं और कुछ कुछ बड़े पेड़ पौधे भी हैं और कुछ बड़ी पेड़ पौधों के पीछे घर भी बने हुए हैं।

सामने एक रोड है जाहा बारिश हो रही है और किनारे किनारे कई सारी दुकाने लागि हुई है और कुछ लोग पैदाल आ जा रहे है और कुछ लोग बाइक मे आ जा रहे है।